ये यह लम्बे वाले अंगूर हैं यहाँ पे नहीं मिलते हैं।

ये जिम थ्रीएटर ये जिम थ्रीएटर है। यहाँ पे लोग जिम करते हैं।

पापड़ी सब चीज मिलती है और यहाँ पे और कुछ फिर दुकानें भी दिखाई दे रही हैं।

ये एक बहोत बड़ी शॉप है यहाँ एल.जी. कंपनी की शॉप है। यहाँ पे एल.डी. कंपनी की मिलती हैं। एल.जी. कंपनी हमारे --

फ़सल एकदम हरी-भरी है। पास में थोड़ी पेड़ भी दिख रही हैं।